इसमें एक नदी दिखाई दे रही है | नदी हरी भरी दिखाई इसमें नदी में बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा पानी का कलर वाइट दिखाई दे रहा है |

इसमें अ-वाइट और आसमानी कलर का बादल दिखाई दे रहा है इसमें लोग बिना चप्पल के बैठे हुए दिखाई दे रहें हैं।

में वा एक कैरेट दिखाई दे रहा है कैरेट वाइट दिखाई दे रहा है| इसमें एक डंटा दिखाई दे रहा है इसमें एक टोकरी दिखाई दे रही लकड़ी की जिसमे बहुत सारे पीले कलर के फुल भरे दिखाई दे रहे हैं जिसमे हरे पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं|

दिखाई दे रहा है इसमे दो लड़के गेम खेलते हुए दिखाई दे रहा है इसमें बॉल दिखाई दे रहा है जिसमे पहना दिखाई दे रहा है जिसका वाइट कलर का दिखाई दे रहा है जिसमे हरी हरी घास दिखाई दे रही है |

दिखाई दे रही है | इसमें बहुत सारा समान भरा दिखाई दे रहा है | इसमे टी-शर्ट रखी दिखाई दे रही है। इसमें रेड ब्लैक रेड हरा कलर की टी-शर्ट भरी दिखाई इसमें बॉल दिखाई दे रही है | बॉल का कलर हरा रेड और वाइट दि --

मछली की शॉप दिखाई दे रहीइसमें मछली बिकती हुई दिखाई दे रही हैइसमें मछली की कलर ब्लैक वाइट दे रहा हैइसमें ----

उ लोग भूसा हरा-हरा खाते हुए दिखाई दे रहें हैं जिसपे नीचे सूखा-भूसा भी पड़ा दिखाई दे रहा है इसमें इसकी आँख दिखाई दे रही हैं इसमें रस्सी बंधी हुई दिखाई--

घर दिखाई दे रहा है | घर का काम च घर का काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है | इसमे दो लड़के दिखाई दे रहे हैं जिसने ऑरेंज कलर की जैकिट पहने दिखाई दे रहा है | इसने पीला कैप लगाए दिखाई दे रहा है | इसमे दिखाई दे रहे हैं | इसमे लकड़ी के डंडे दिखाई दे रहे हैं ।

इसमे दिवार का कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है इसमे लकड़ी के डंडे और भी दिखाई दे रहे हैं । इसमें --

एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर का कलर वाइट और आसमानी दिखाई दे रही है इसमें नीचे हरे कलर की कालीन बिछी दिखाई दे रही हैऔर इसमें एक औरत ने बॉल पकड़ी दिखाई दे रही हैं बॉल --